सामने एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है जहाँ पर कुछ लोग खेल रहे हैं और कुछ लोग बैठे हैं और कुछ लोग किनारे किनारे सब खड़े हैं।

सामने ही एक खम्भा भी लगा है और कार भी सफेद कलर की खड़ी है और आस-पास कई सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बहुत बड़ा शोरूम है जिसे व्हाइट कलर से पैंट किया गया है और दीवारों की छत पे लाइट भी लगी हुई है और कुछ फूलो से सजावट किया गया है और कुछ छोटे-छोटे पोस्टर भी चिपके हुए है।

एक व्हाइट कलर का टेबल भी दिखाई दे रहा है जहां उसके सामने एक ब्लू कलर का स्टूल भी लगा हुआ है और आस-पास एक शटर वाली दुकान हैं।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

और अंदर की ओर दो स्कूटी दिखाई दे रही है और एक साइकिल भी दिखाई दे रहा है और पास ही कुछ पौधे भी लगे हुए है।